नीचे टाइल्स मार्बल लगाया गया है ऊपर ढलाई टाइप्स का किया गया है कबर्ड के कलर है ब्लैक -ब्लैक टाइप के--

रोड पे व्हाइट -व्हाइट बॉर्डर टाइप्स किया गया है कुछ--

एक जंगल टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत बड़े-बड़े चट्टाने हैं।

और भी एक-दो घर टाइप का दिख रहा है बड़े-बड़े ब्रिक्ष है।